कहता है। मस्ज़िद उसे बनाया गया है जो बहोत बड़ा मस्ज़िद लगने देखने में लग रहा है।

बोहोत ही अच्छी तरीके से इसे डिज़ाइन किया जाता है। बोहोत ही बड़े-बड़े इंजीनियरों ने सिविल इंजीनियरों ने --

देख रहे हैं पानी उठ रहा है। नीचे से प्रेसर दे रहा होगा करके पानी उठ रहा है।

काफी पेड़-पौधे भी आस-पास में लगे हुए हैं। बाकी का जगह दिया गया है।

इतने जादे वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ न कुछ काम कर के डिजाइन नीचे बना रहे हैं लग रहा है।

बनया गया। ओ काफी सुन्दर देखने में लग रहा है। ये लकड़ी से बनया गया।

काफी जो खेलने खिलाड़ी आये हैं। काफी बड़े दूर-दूर से खिलाड़ी आये हैं। देखिये लग रहा पीछे हॉस्टल जैसा लग रहा है। दे --

फिगर दिया गया है जो काफी अच्छा लग रहा है।

लगा रहा है फाइन ट्रैडरस से पहले भी कुछ लिखा गया होगा यहाँ जो --

प्रोडक्शन का काम हो रहा है काफी तेज़ी से हो रहा --

यह बहोत ही अच्छा लग रहा देखिए आस पास से काफी पेड़ है। पानी की गहराई बहोत ही ज्यादा लग रहा --

देखिये यहाँ शिप लग रहा है। बहुत अच्छा सिद्ध हो रहा है यहाँ जो --

ये फैक्ट्री जैसा नज़र में आ रहा है। देखिए काफी ज्यादा --

लगा रहा है। चारो तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र में आ रहा है। पानी में भी दो भैस --

बूढ़ा भी आया --

फोटो मे देख सके पहाड़ी के ऊपर मे बैठा हुआ है।

पौधा जैसे लग रहे। यहाँ काफी आदमी आते हैं इधर घूमने के लिए ये है पर्यटन स्थल है।